ऊपर वाली दुकान बंद है।

तथा वाटरफॉल --

तथा घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे --

यह एक मैकेनिक है जो गाड़ी को रिपेयर कर रहा है।

दृश्य में बहुत सारी वॉल्वो बसें खड़ी हुई हैं।

इस दृश्य में हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक जंगल दिखाई दे रहा है ।

दुकानदार से कपड़े खरीदने आए हुए हैं।

दुकान के ऊपर एक नीला बोर्ड लगाया गया है।

दुकान के दोनों शटर बंद है।

तथा यहाँ पर गंदगी भी फैली हुई है।

इस दृश्य में एक साइकिल --

बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है।

जो बहोत अच्छे तरीके से सजाई गई है।

जिन बिल्डिंगों में बहुत सारे लोग रहते हैं।

लोगों को गहने बता रहा है।

जिसके बाहर हरी भरी घास लगी हुई है।

जो बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

कई मजदूर कार्य कर रहे हैं।

इस दृश्य में एक कारपेंटर की शॉप --

जिसके बाहर काफी श्रद्धालु खड़े हुए हैं।

यह सभी लोग इलाज करवाने के लिए--

इस दृश्य में दो कॉफी के कप रखे हुए हैं ।

कॉफी के पाउच भी रखे हुए हैं ।

बच्चों ने छोटे-छोटे खिलौने बनाए हुए हैं ।

जिसके बाहर एक पेड़ लगा हुआ है।

मकान का रंग काफी फीका पड़ गया है।

पार्क के बीच में हरी-भरी घास लगी है।

तथा पीले फूल भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं।

गेट को सुंदर तरीके से बनाया गया है।

एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज है ।

इसके बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है ।

गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था।

यह एक पारक का रास्ता है।

सामने बहुत अच्छी खिड़कियाँ लगाई गई है।

और साफ दिखाई दे रहा है।

दाढ़ी बनाने वाली दुकान है।

बहुत अच्छी कटिंग होती है।

यहाँ पर मिस्त्री छत का कार्य--